एक बराबर में ये ठेली सी खड़ी है इसके पास एक आदमी का हाथ है और एक नीचे जंगला है एक ऊपर जंगला है और कुछ इसमें ताक से बने हैं।

वो लगा है टेंट सा और कुर्सी पड़ी है कुर्सी पे चादर पड़ी है और मैटि बिछी-बिछी है लाल कलर की घास हैं।